और यहाँ मुझे एक बड़ा सा टावर भी दिख रहा है जो लोहे का है।

यहाँ पर मुझे बहुत से लोग दिख रहे हैं।

और यहाँ लाइट्स भी लगी दिख रही है और--

क्रीम के पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर लाइट्स भी लगी दिख रही है।

और यहाँ पर कुछ सामान भी--

और यहां कुछ लाइट सी लगी हुई दिख रही है और--

यहां पर मुझे फूलो की दुकान दिख रही है और यहां पर--

और कुछ और पूड़ियाँ भी दिख रही है।

और यहाँ एक तार भी है जो बहुत सारी--

यहां पर मुझे अह एक शॉप दिख रही है।

जो की आइस क्रीम उम्म की लग रही है और यहां पर काफी सारी आइस क्रीमस रखी दिख रही है।

यहाँ पर मुझे कुछ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

यहाँ पर मुझे दो केक दिख रहे हैं जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं।

यहाँ पर मुझे एक शॉप दिख रही है जहाँ बहुत सारे सामान रखे दिख रहे हैं।

और यहाँ मुझे गुड़ियाँ भी दिख रही है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा घर दिख रहा है।

और मुझे यहाँ ब्लैक कलर में एक छतरी भी दिख रही है।

और यहाँ पर अ इसके हाथ में थैली भी है और यहाँ मुझे डोर भी दिख रहा है।

यहाँ पर मुझे एक हम्म--

और नीचे भी यहाँ टाइल्स लगी हुई है।

चलते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बहोत बड़ा सा घर दिख रहा है और--

और यहाँ पर पेड़ की टहनियाँ भी मुझे दिखाई दे रही है जो--

कुछ लोगों ने छतरी खोल रखी है और चल रहे है।

और यहां मुझे कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं और जो हरे--

और यहाँ पर कुछ फंक्शन सा मुझे दिखाई दे रहा है।

और यहां मुझे एक डोर दिख रहा है।